निचे जो है चटाई बिछी हुई है ब्लू रंग की है सब सबने वह--

सामने जो घर बना हुआ है जिस पे तार है सामने कुछ लिखा हुआ है में

पत्थर है बड़े बड़े पेड़ छोटे छोटे घास--